जो चिकनी मिट्टी से बने है। जिन पर डिज़ाइन --

जिस लिए अंदर हरियाली बहुत है जहाँ एक व्यक्ति--

यह ह एक क्लिनिक है।

और यह एक पार्क में स्थित है पार्क में हरी घांस रंगीन फूल --

यहा एग-एग ऑफिस है।